स्विंग पुल में जो है नीचे ससरने वाला है और यहां पे जो है।

नहा रहे हैं पानी में और साइड में जो है।

और सुप्रीम फर्नीचर का दुकान है और इस दुकान में जो है।

जो घर बन रहा है और अंदर जो है काम चल रहा है बहुत सारा ईंटा रखा हुआ है नया और पुराना दोनों ही।

औड़ सोनी का बैनर है औड़ आईफोन थर्टीह का फोटो बना हुआ है मोबाइल का।

और दो पेड़ है जो कि नदी का पानी को रोक रहा है उस साइड जाने से।

साइकिल पे कुछ लोग हैं कुछ लोग पैदल ही खड़ा है।

य और यहाँ पे जो है ननवानी का शोरूम है यहाँ पे हर चीज मिल रहे है यहाँ पे जो है बाहर में --

और रोड है रोड के किनारे पे बहोत सारा बिल्डिंग है।

और जो है यहां पे पूरा बेंच लगा हुआ है बच्चों के बैठने के लिए।

फूल का गमला है और नीचे कार्पेट बिछा हुआ हैं।